इसमें बहुत सारे फल है और यह बॉस्केट में रखें हुए हैं| इसमें जो स्टैंड है जो ब्लैक कलर की है।

यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पोल दिख रहा है| यहाँ पर आसमान दिख रहा है| आसमान वाइट रंग का है| यहाँ पर एक बैनर दिख रहा है जो बहुत दूर है।

जो छत पर लगा हुआ है| पंखे का कलर वाइट रंग का है और छत का कलर वाइट रंग का है| यहाँ पे दीवाल है दीवाल जो है वाइट रंग की है| यहाँ पे खिड़की भी है।

इस इमेज में बहुत सारे बाइक भी है और स्कूटी भी है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने वाइट कलर का ड्रेस पहन रखा है| यहाँ पर एक और व्यक्ति है|

झील में दो बोट दिख रहा है| यहाँ पर पहाड़ दिख रहा है और यहाँ पर आसमान भी दिख रहा है जो व्हाइट रंग की है।

जो ब्लैक कलर का है| यहाँ पर आसमान भी दिख रहा है जो वाईट रंग का है जो आसमान का थोड़ा-सा ही पार्ट दिख रहा है।

बहुत सारे महिला और पुरुष है| एक महिला है जो सीढ़ी पर बैठी है| उस महिला ने अपना चेहरा ब्लू कपड़े- कपड़ा से ढक रखा है।

बहुत सारे पुरुष हैं| एक पुरुष ने व्हाइट रंग की टी-शर्ट और स्लेटी कलर का पेंट पहन रखा है| यहाँ पर एक बास्केट भी है जो वाइट रंग का है| यहाँ पर बाल्टी भी है।

व्यक्ति दिख रहा है जिसने ब्लैक कलर की गंजी पहन रखी है और हाफ रंग का पेंट पेहन रखा है| उसने अपने हाथ में एक मोबाइल पकड़ रखा है और मोबाइल का कलर ब्लैक कलर का है।

और हाफ पैंट पहन रखा है| यहाँ पे जो झूले का कलर है वो बहुत सारे कलर का है ग्रीन येल्लो और ब्लू कलर का है।

बहुत सारे बच्चे हैं लड़के हैं| यहां पर एक महिला है जो वाइट रंग की ड्रेस पहनी उसने ब्लाक रंग का चप्पल पेहन रखा है| उसने अपने आँखों में चश्मा लगा रखा है| यहाँ पे दीवार का कलर है वो वाइ--